और इस ट्रेन के ऊपर जो लोगों के लिए इधर से उधर क्रॉसिंग के लिए बहुत ही प्यारी व्यवस्था की गई है।

यहां पर सभी प्रकार की ज्ञान की किताबें उपस्थित हैं।

जिम में जाने वाले लोगों के लिए यह पर्याप्त व्यवस्थित यहां पर सारी मशीनें हैं।

यह एक पहाड़ है जहां पर पत्थरों से दीवार बनाई गई है।

कॉपी पेन पेंसिल सभी प्रकार की वस्तु मिलती है मुझे ये बहुत अच्छा लगा।

क्योंकि यह जगह बहोत ही साफ और सुथरा है मुझे ये बेहद पसंद है।

और यहां पर अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है।

जो गर्मियों के दिनों में बहुत ही प्यारा होता है यहां पर बच्चे--